दीवाल पे कुछ लिखा हुआ है हिंदी भाषा में--

इस फोटो में एक व्यक्ति गद्दा बनाते हुए दिख रहा है।

सारा रजिस्टर रेड कलर का है।

और पीछे में एक ब्लैक कलर का चेयर भी रखा हुआ दिख रहा है।

इसमें टंकी और सेनेटरी का सामान दिखाई दे रहा है।

बाहर में दो ठो रेड कलर का स्टूल भी रखा हुआ है।

और उसके साइड में भी चम्मच है।

एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिख रहा है बाहर में।

एक बच्चा दिख रहा है और कुछ लोग दिख रहे है होटल में।

इसके अंदर एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है बैठ के।

उसके ऊपर एक वाइट कलर का ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और आजू बाजू बहुत सारे टूल रखे हुए हैं।

इस फोटो में दुकान दिखाई दे रहा है दो तीन ठो।

सामने से धूप की रोशनी आते हुए दिख रही है।

दो जगह रखा हुआ है एक जगह ज्यादा है एक जगह छोटा है।

नीचे में बहुत सारा लोहे का तार रखा हुआ है।

इस फोटो मे एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसका नाम मन पसंद साड़ी सेंटर एंड ड्रेसेस है।

और यह दुकान के अंदर वाइट कलर का लाइट लगा हुआ है।

इसमें लाइट लगाया हुआ है और दो तो वाइट कलर का विंग्स लगाया हुआ है।

और उपर में लिखा हुआ है बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू व्याध आरक्षण।

सारा समान इन बोरियो में रखा हुआ है वाइट कलर के।

बहुत सारा कार्डबोर्ड और अलग अलग चीज रखा हुआ है।

ऊपर में बोर्ड भी लगा हुआ है।